और उसमें जितने भी सामान है उसमे भी तेलगु और हिंदी लिखा हुआ है ये दुकान लगता चेनई में है ।

ये लगता है कपड़ा का दुकान है पंखा लगा हुआ है पंखा पर नहीं चल रहे ठंड का लगता दिन है ठंड का सब कपड़ा बिक रहा --

ये एच.डी.एफ.सी. बैंक है उसमें बुलू कलर का लगा हुआ है ए --